पक्का अंगना है जिसमे लाल कलर की डोरी सी मरी हुई है। सामने में एक बड़ा सा घर दिख रहा है जो व्हाइट कलर का है। जिसकी कांच ब्लैक कलर की है और ऊपर में बहुत सारी छोटी छोटी सी लाइटिंग लगी है।

ऊपर में एक डिश एंटीना भी लगा हुआ है। आसमान ब्लैक कलर का है। सामने में एक पिलर है। उसके साइड में एक पेट्रोल मशीन लगी हुई --

छोटे छोटे से पांव है जो व्हाइट एंड रेड है। दुमछी में रेड कलर है। इस तरफ भी कुछ चुंडी पड़े हुए है जिनके खाली सूंगे दिख रहे हैं लम्बे लम्बे से।

जिसने व्हाइट कलर का शर्ट पहना है पैन्ट ब्लाक है। हाथों पे हल्की सी घड़ी दिख रही है। एक हाथ उसने इस साइड पत्थर पे रखा है। दूसरा हाथ दूसरी साइड पत्थर में नीचे में हल्की सी उजाला सा आ रहा है।

बहोत बड़ा सा पक्के का रूम है। दीवार में एक प्रोजेक्ट की आ रही है। वो आदमी हाथ उठा के खड़ा है। उसने महरूम कलर का शर्ट व्हाइट पैंट पहना है।

सामने में बोहोत सारे पक्के के घर दिख रहे हैं कुछ की छत वाले भी दिख रहे हैं और कुछ ऑरेंज कलर के कुछ ग्रीन हैं आसमान व्हाइट हल्का ग्रीन और बैगनी है बीच में बोहोत सारे लोग खड़े हैं ।

मर्दों ने येलो कलर की गंजी पहनी है कुछ ने व्हाइट पहना है और कुछ औरतों ने ग्रीन ब्लू रेड पिंक व्हाइट व ऑरेंज कलर की साड़िया पहनी है सब हाथ जोड़े पानी पे खड़े हुए हैं ।

ठाकुरों के सर पे मुकुट है और एक ठाकुर हाथ हाथ उठाए हुए हैं सर गले पे माला है फूल की जो की ऑरेंज है येलो कलर की फूल है और रेड कलर की चुन्नी भी है।